यहाँ दीवाल पे लिखा है स्वच्छ अभियान जल ही जीवन है और इसमें आपको साइड में एक बंदा जहाँ खड़ा दिख भी रहा होगा |

और ये भी कम से कम पाँच छः मजिल स्टोरी है और कुछ लोग --

क़िला टाइप का दिख रहा है क्यूंकि पुराने टाइप का बना हुआ है | बहुत ही अच्छी नकाशी की गयी है चार गुम्बद टाइप के ऊपर दिख रहे हैं |

अ साइड मे देखिए जनरेटर भी रखा गया है और बाकी लाइट भी और देखिए बड़े बड़े खंबे भी यहाँ लगा रखे है लाइट के लिए ताकि कोई किसी को दिक्कत न हो |

लाइन से दुकाने बनी हुई हैं | इस तरफ देखिये थोड़े पेड़ लगे हुए हैं और दुकान में कुछ नाम भी लिखा हुआ है अमृत करके लिखा हुआ है |

पेड़ भी लगाया गया है और डामर रोड दी गई है। डामर रोड के सामने देखिए पर आप ए टंकी भी दी गई है। दो टंकी है आपको पानी टंकी दे --

ये देखिये वीआईपी टेरा वुड टेरा वर्ल्ड बैग्स आपको मिल जायेंगे | छोटे से लेके थोड़े बड़े तक आपका आराम से मतलब पांच छे लोगो के कपडे आराम से इसमें आ सकते हैं |